यहां एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान में बहुत सारा बोतल का सामान रखा हुआ है।

सामने में एक रास्ता हमें दिखाई दे रहा है।

उनके अंदर कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

छोटा सा वेंटीलेटर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में पेर का नजर भी आ रहा है।

के अंदर में बहोत सारा वीवो का फोन रखा हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहोत सारा टेबल्स और चेयर भी रखा हुआ है।

नाव के ऊपर में कुछ सामान भी रखा हुआ है।

इसी के अंदर बहोत सारा टेबल और चेयर्स भी दिखाई दे रहा--

कैफे में दो कस्टमर बैठा हुआ है।

यहां स्टूडेंट बच्चा लोग व्हाइट यूनिफॉर्म ड्रेस में असेंबली ले रहा है।

तीन लोग का तीन लाइन बना हुआ है।

के सामने इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।

गेट के अन्दर बहुत सारा ऑफिस बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

आसपास बहोत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

घर के बीच में बनाना का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

स्कूल बरंदा में बहोत सारा स्टूडेंट बच्चा लोग बैठा हुआ है।

मिरर भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर वाईफाई टावर भी दिखाई दे रहा है।

आसमान भी साफ नजर आ रहा है।

बाहर में रेड कलर का और ब्लू कलर का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

बैनर में एम_एम चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा हुआ है।

किचन के अंदर बहोत सारा टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के काउंटर भी दिखाई मिल रहा है।

टेबल के ऊपर मेन्यू बुक भी रखा हुआ है।

वॉल में एक मिरर भी दिखाई दे रहा है।